यह ग्राउंड बहुत बड़ी है यह ग्राउंड में बहुत ही सारे सरसों लगे हुए हैं यह सरसों में काफी सारे फूल दिखाई दे रहे यहां का नजारा बहुत ही सुंदर दिखाई --

एक सड़क है यह सड़क काफी बड़ी है यह सड़क पर एक टोटो लगी है यह टोटो तीन चक्के की है यह टोटो बैटिक से चलती है यह टोटो में अनेक लोग सवारी करते है एवं भाड़े में भी दिए जाते है।

यहां से फूल लोक ले जाते है किसी के वरमाले में काम दिए जाते है कोई भगवान को चढ़ाते --